इस तस्वीर मे मुझे कुछ दुकान दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे तीन बाइक दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे एक रैक दिखाई दे रही है।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

यहां मुझे एक खिड़की दिखाई दे रही--

यहां मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे--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

इस तस्वीर में मुझे एक मस्जिद दिखाई दे रहा है।